इस द्र्श्य में हम देख पा रहे है यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे खंभे उठे हुए है खंबे के बीच मे से सरिया निकली हुई दिख रही है दूर की तरफ टीन शेड पड़ा हुआ है और बहुत घने-घने से पेड़ लगे हुए है एक टेंक जैसा बना हुआ है ज़मीन में कुछ तशले और फड़वा पड़ा हुआ है मिट्टी भी पड़ी हुई है यहाँ पर गिट्टी मोरंग भी दिख रही है।

और एक पानी का पाइप पड़ा हुआ--

इस द्र्श्य में हम देख पा रहे है ये एक बहोत बड़ी सी फल की दुकान है यहाँ पर देखिये सभी प्रकार के फल रखे हुए है यहाँ पर देखिये जैसे की आम संतरा सेब तरबूज़ ख़रबूज़ा और पपीता केले भी रखे हुए है। यहाँ पर बहोत सारी लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही है अंदर की तरफ एक आदमी खड़ा हुआ है दो लड़के खड़े हुए है जिन्होने बैग टांगे हुए है।

जैसा की इस द्र्श्य में हम देख पा रहे है यहाँ पर ये एक दुकान है जिसमें कि बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है बस्तर डेरी फार्म यहाँ पर देखिये दुकान के बाहर बहुत सारा सामान टंगा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ --

रखी हुई है और दुकान मे लाइटे भी जलती हुई दिखाई दे रही है।

लगता है अंदर की तरफ बहुत घने -घने से पेड़ लगे हुए हे।

जैसा की इस द्र्श्य में हम देख पा रहै हैं यह एक शादी का लोन हैं यहाँ पर सामने की तरफ एक --

इस दृश्य मे हम देख पा रहे हैं यह एक रास्ता है रास्ता --

द्र्श्य मे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए ये पानी भरा हुआ हैं जिसके किनारे की तरफ बाउंड्री बनी हुई हैं और यहाँ--

पर कुछ घास दिखाई दे रही है तथा कहीं-कहीं पर सुखी वी--

पेड़ दिखाई दे रहे हे और यहाँ पर सामने की तरफ देखिए बैठने के लिए बेंचे बनी हुई हे ज़मीन पर हरी-भरी घास लगी हुई हे।

में है जिसमे छोट- छोटे पौधे लगे हुए हे यहाँ पर देखिये ये लड़कीयां है जो कि योगा करती हुई दिखाई दे रही हे पीछे की तरफ बहोत बड़े-बड़े से पेड़ भी लगे हुए है।

पा रहै है ये किसी मज़ार का द्र्श्य है यहाँ पर देखिए --

छोटी - छोटी दो मीनारे बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

पीछे की तरफ एक बाउंड्री दिखाई दे रही हे और यहाँ पर ज़मीन पर कहीं पर घास और कहीं पर काई जमी हुवी हैं।

पहनी हुई है सर पर सैंटा वाली टोपी पहनी हुई है ओर भी बच्चे खड़े हुए है सभी बच्चों ने सैंटा की टोपी पहनी हुई है।

दी और बहुत सारे मोरंग का ढेर दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस--

की तरफ छोटे बड़े कलश लगे हुए हैं जिनको सुनहरे रंग से रंगा हुआ है पीछे की तरफ बहुत बड़े - बड़े से पेड़ लगे हुए है छो --

का है जिसमे की बुहुत ऊंची सी एक लाइट जलती हुई दिखायी दे रही है दूर पर कुछ लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पर ये बाउंड्री बनी हुई --

द्र्श्य मे हम देख पा रहे हैं ये एक शादी का हॉल है यहाँ पर देख--

ये दूर पर बाउंड्री बनी हुई हैं बाउंड्री के पीछे की तरफ बहुत बड़े - बड़े से पेड़ लगे हुए हैं यहाँ मैदान मे भी कहीं पर घास तथा कहीं पर सूखे पत्ते --

ये रेल्वे पलटेफ्रॉम दिखाई दे रहा हैं सामने की तरफ--